एक बहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा--

रहा है और इस में दो छे--

अलग तरह के रखे गए--

मुझे एक पेड़ लगा हुआ दिख--

कुछ तोड़ते हुए नजर आ रहे है और यह--

है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है।